इसके ऊपर टीन सेट किया गया कोकोकोला की बैनर भी लगे हुए है।

मैदान के अंदर काफी सारी टेबलें कुर्सी वैगैरा भी दिखाई दे रही है।

और एक एक व्यक्ति और एक बच्चा टेबल कुर्सी पर बैठा हुआ है।

यह एक किराना शॉप है यहां कराने का सामान मिलता है।

काफी सारी बोरी वगैरा भी दिख रही है चावल वगैरा की बोरी भी सामने रखी हुई है।

में जिसमें पेट्रोल पंप का केबिन भी दिखा दिखाई दे रहा है।

वन के चारों तरफ बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ लोग ए पे बाइक पर खड़े बाई बाइक पर बैठकर पेट्रोल डलवा रहे हैं।

बस में बसों के बगल में एक काफी बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

साइड में ही एक छोटी छोटी सी कुछ खड़ा हुआ है और बोरी वगैरह भी एक बोरा डाला हुआ है।

और दूसरी उसी के बगल में जय मां विद्या स्वीट की दुकान दिखाई दे रही और--

यह एक फील्ड एरिया है जिसमें रेड कलर की कारपेट बिछी हुई है कुछ--

टॉफी का बैनर भी लगा हुआ हैं काफी सारा आइटम भी दिख रहा है।

एक व्यक्ति जो काउंटर पर बैठा हुआ है जिसका फेस नहीं दिखाई दे रहा है।

शॉप के अंदर काफी सारी टेबल चेयर वगैरा भी दिख रही है।

यह एक पार्क है जिसमें काफी सारे घर भी दिखाई दे रहे है दो स्विमिंग पूल भी है।

और एक रॉड पर दो बिजली का बोर्ड हुआ है खतरे खतरेवाला और केबल भी दिखाई रही है।

और नदी के अंदर का पानी भी बहुत ज्यादा गंदा है इसमें दो नाव भी दिख रही है।

दुकान में फल फ्रूट की दुकानें भी है काफी सारी गाड़ियां भी दिख रही हैं आती।

दिख रही है व्यक्ति भी आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ।

दो चार पहिए रखे हैं और कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं।

यह एक मंदिर है जिसमें सामने एक झूमर लगा हु--

और ब साथ ही सामने की दीवाल पर एक लेटर पोस्ट करने वाला बॉक्स भी टंगा हुआ है।

उसे जाली के अंदर पांच बटके भी दिखाई दे रही हैं।

यह एक रूम है जिसकी छ जिस जिसकी छत पर सिल्वर कलर की जाली भी लगी हुई हुई औ--

और और छोटी छोटी घास वगैरा भी दिखाई दे रही।

यह एक यह एक गार्डन है गार्डन के बाहर घर भी कुछ दिख रहे हैं।